यहां पे लोग अपने पैसे जमा कराने पैसे निकालने के लिए अपने बैंक का काम करवाने विजिट करते हैं।

यहां पे गार्डन एरिया है पेड़ पोधे --

अपने हाथों से ग्रीन रेड येलो ।